ट्रॉफी सब है। फुटबॉल सब है। खिलौना सब है। गुड़िया-गुड्डा सब है विकेट सब है।

चारों तरफ से घेरा हुआ है। पेड़ ते बाहर सब लगा हुआ है।

और ये गाछ सब है इस बहोत बड़ा-बड़ा ।